सामने एक केक का दुकान दिखाई दे रहा है। एक खड़ा नज़र आ रहा है तथा पे केक कटी हुई नज़र आ रही है। ऊपर एक पंखा नज़र आ रहा है तथा लाइट दिखाई दे रहा है।

सामने एक मकान नजर आ रहा है ऊपर एक बरामदा नजर आ रहा है तथा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा महल नजर आ रहा है । महल के बाहर पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे है । ऊपर आसमान नीला और साफ नजर आ रहा है तथा नीचे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे है ।